और यहां दो तीन बोर्ड भी लगे हैं दाते का अस्पताल है।

जाड़ा दिख मेरे को जैसा लग रहा की यहां टेंट लगा है बढ़िया शादी का प्रोग्राम है यहां कु--

तीन बोर्ड भी लगे हैं इस पार से भी आदमी जा रहा है यहां का करमचारी बैठा लग रहा है।

जी यहां ये स्कूल है और यहां दरवाजे भी लगे चार पांच दरवाजे लगे हैं ग्राउंड भी बढ़िया है साफ सुथरा ग्राउंड है बच्चे नजर नहीं आ रहे है मास्टर भी नजर नहीं आ--

है ना ये और यहां अच्छा भी लग रहा है हरियाली जैसे--

और यह लगता है रेल टू कोयला ओयल लोड करके गाड़ी है ना ये स्टेशन ये क्या बोलते पटरी भी बहोत अच्छी है और यहां--

जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कोई जिम जैसे जिम मतलब वाला लग रहा है यहां डंबल वगैरह रखे हुए हैं और यहां--

जैसे कि मैं देख पा रहा हु कि लगता है चाय की दुकान--

है न यहां दुकान का कलर भी बेहतरीन अच्छा लग रहा है दो लाइट जल रही हैं।